एक बहुत बड़ा पहाड़ है इस पहाड़ के बीच में एक गुफा जैसा बना हुआ है और यहाँ एक आदमी चश्मा पहन के खड़ा है और इधर एक आदमी इस आदमी की फोटो खिंच रहा है इस पहाड़ के चारो ओर बहुत बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगे हैं।

एक घर है इस घर को बहोत अच्छी तरीके से बैलून से सजाया गया है और यहाँ एक आदमी खड़ा है और यहाँ नीचे में भी बहोत सारे बैलून्स है यहाँ बहोत सारे सोफे और कुर्सियाँ लगायी गयी हैं जिन पर की लोग आ कर बैठते हैं ।

एक घर है इस घर को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन से बनाया गया है इस घर के बाहर में दरवाजा लगा हुआ है यह दरवाजा लोहे का बना हुआ है और इस दरवाजे पे भी बहुत अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है इस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं।